झाड़ को पकड़कर ये फोटो खींचा रहे है दोनों सामने की तरफ देख रहे है और मुस्कुरा रहे।

ऊपर छत दिख रहा है बगल में एक लंबा सा गैलरी दिख रही है।

बगल में नीचे जमीन पर घास लगी है।

पास से एक सफेद लंबी पट्टी सी रोड के किनारे बनी है।

इनमें छोटी-छोटी खिड़कियों में दो मूर्ति जैसा लग रहा है एक सामने एक पीछे

बंधा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर जजा लगा है।

तस्वीर में एक व्यक्ति सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ दिख रहा है इसमें नीचे पायजामा--

सफेद रंग का ये पहन रखा है नीचे का फर्श लाल है और पीछे काले रंग का --

जिसके कारण जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है यह नृत्य कर रहे है।

इन्होंने सभी ने लगभग सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं जबकि एक व्यक्ति ने डार्क कलर का शर्ट पहना हैं।

सामने एक बैनर टंगा हैं उसमे कुछ इंग्लिश मे लिखा हैं दो लड़किया सामने खड़ी हैं जो पीछे की ओर देख रही हैं।

आसपास में काले और सफेद रंग के कुछ पट्टे जैसा पड़ा हुआ है पीछे बहोत बड़े-बड़े सफेद कलर के ढ़ेर सारे मकान दिख रहै है।

लाल कलर के बोर्ड के ऊपर नीले रंग से अंग्रेजी में मोमेंट लिखा हुआ है नीचे --

तस्वीर एक किराने के दुकान के अंदर की है जिसमें बहुत बड़ा --

कुछ सामान पेकेटों में टेक के सहारा लटके हुए हैं। सामने चैर पे लाल रंग का स्वेटर जैसा कुछ रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारी राडे है नीचे मकान में बहुत सारे बड़े-बड़े दरवाजे बने हुए हैं।

सफेद रंग का सीमेंट का डडिवाइडर बीच में बना है जिसमें एक लाल रंग की रोड ऊपर से दिख रही है।

पीछे कुछ मजबूर लोहा बाँधने का काम जमीन पर बैठ कर रहै हैं बहुत सारा लोहा बाँधा जा रहा है।

इसमें एक पिले रंग का बड़ा सा छाता दिख रहा है जिसमे कत्थे रंग के बड़े चारो तरफ से पत्ते बने है |

बीच में गोल- सा चक्र बना हुआ है उसके अंदर दो पट्टे लंबे बने हुए है चक्र के अंदर एक छोटा -सा लाल रंग का डिजाइन बना हैं।